एक के ऊपर पुराने टाइप की छत है और एक के ऊपर नए जमाने की छत लगी हुई है।

यह फोटो एक लाइब्रेरी की हैं।

और लाइब्रेरी में चार कुर्सियां रखी गईं हैं और एक मैन कुर्सी है जो मैनेजर संभालता है या फिर एक टीचर ।

इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है इसका नाम शार्प एस_एच के नाम से है।

जो रूकन पूरा अबोहर में स्थित है।

ये बहोत हि अच्छा स्कूल माना गया है।

वृक्ष बहोत ही हरे भरे नजर आ रहे हैं।

घर बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। लाइटे लगी हुई है और लाइटें जल भी रही है।

दो लोग बाहर खड़े हैं और एक गाड़ी भी उनके आंगन में खड़ी है।

एक आदमी भी यहां पर खड़ा है।

उनका एक एनुअली फंक्शन किया जाता है और बाद में उन लोगों को--

यह फोटो किसी कॉलेज का है।

सोलर सिस्टम से बिजली की बचत होती हैं।

इसके साथ हम लोगों को सब्सिडी भी मिलती है लोग आजकल घरों के अलावा अपने अपने खेतों में भी--

जो उनको उनके ऑपरेशंस करने के लिए इक्यूपमेंट देते हैं।

पिज़्ज़ा और बर्गर्स बनाए जाते हैं लाइटिंग भी बहोत ही अच्छी--

डेकोरेशन की गई है और पिज़्ज़ा की पिक्चर्स भी बहोत सुंदर लगाई गई है आज बाहर--

यह एक मोबाइलस की शॉप है जहां पर एक काउंटर बना हुआ है और इसका नाम ब्रदर्स जाईन्स के नाम से हैं।

और सामने तरह तरह के ब्रांड के न्यू फोंस डिब्बों में बंद पड़े हैं।

फ्री टाइम में लोग बैठे हुए हैं।